यह एक रेस्टुरेंट के अंदर का इमेज है।

यह किसी गुफा के अंदर का इमेज है।

जिसमे टाटा स्काई बजाज फिनांसर संगीत इलेक्ट्रॉनिक्स --

और तीन लोगो ने सर पे गमछी बांधा हुआ है।

जिनका आकार बिल्डिंग जैसा है।

और लाइट्स भी जल रही है।

यह एक रोड का इमेज है।

इस्पे होमियो क्लिनिक लिखा हुआ है ।

यह एक कंस्ट्रक्शन साइट का इमेज है।

जो की एक बड़े से ट्रे में रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

जिनका रंग ब्लू ब्राउन वाइट पिंक रेड येलो --

जिम का फर्श स्काई कलर का है।

जिसमे पीले रंग का डेस्क लगा हुआ है।